लिखा हुए हैं दो मोबाइल नंबर लिखे हैं जो नीले कलर से ऊपर नीला और --

बीच में मूर्ति बनी हुई है और इसपे कहीं कहीं हरी घास दिख रही है नीचे पत्थरों की --

सामने एक मंदिर दिख रहा है जिसमें ऊपर रंगीन लाइट लगी हुई है और रंगीन--

सर्किट लगी हुई है सामने लंबी झालर लगी हुई है नीचे बहुत सारे आदमी --

नीला काला आसमान दिख रहा है और बहुत सारे तार दिख रहे हैं साइड में एक टंकी बनी हुई है पीछे --

सामने एक मंदिर बना हुआ है जिसमें दो गु नीचे घोड़े बने हुए हैं ऊपर रंगीन --

लटकी हुई है दोनों साइड केल के केले के पेड़े लगे हुए हैं और दोनों साइड माइक लगे हैं।

सामने एक हॉल है। जिसमें दोनों साइड लंबी-लंबी बेंच डाली हुई है। जिन पर आदमी बैठे हुए हैं और उनके सामने बेंच है जो कथा--

प्रेसीडेस लिखा हुआ है और नो ए_सी रूम नॉन ए_सी रूम --

हंड्रेड परसेंट सेफ नंबर लिखा है और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है ऊपर नीला आसमान दिख रहा --

खड़ी हुई है चारों ओर बहुत सारे ब आदमी --

ग्रीन पौधे लगे हुए हैं और एक पीला पौधा है साइड में घर है जो पीले कलर का है जिसमें ऊपर नीला सफेद आस--

ऊपर न रंगबिरंगी झालर लटकी हुई है बीच में ऊपर एक बड़ा सफेद बलब लगा है और ऊपर रॉयल प्लेस लिखा हुआ है।

इसमें सामने एक तीनों का वेयर हाउस बना है और बाहर--

पहने है और सामने और भी दुकानें दिख रही हैं और एक तौल काँटा रखा हुआ है एक --

कुछ ट्रॉफी रखी हुई हैं और पीछे एक पेड़ दिख रहा है और--

लाल बड़ा पोस्टर लगा है ऊपर जिसमें अरोमा --

अह एंड लिखा हुआ है और नीचे बहुत कुछ लिखा है नीचे नंबर भी लिखा है।

सामने एक हॉल है जिसमें बहोत सारे बच्चे डांस --

सामने एक कार दिख रही है जिसके आगे का मुंह खुला है और एक आदमी खड़ा है जो नीले कलर की--

सामने बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है जिसमें नीचे हरी घांस लगी हुई है और एक झोपड़ी बनी है जिसमें उ--

एक साइड में सफेद पन्नी डाली हुई है और दो एक काले और एक नीली ड्रम रखी हुई है तीन छोटे लकड़ी वे मट्टी के चूल्हे --

पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कहीं-कहीं काले धब्बे दिख रहे हैं ऊपर सफेद और --

ए_सी लगा हुआ है और नीचे एक सफेद गमला है जिसमें--

अम ग्रीन पौधा लगा हुआ है साइड में आधा सोफा दिख रहा --

सामने एक आदमी खड़ा हुआ है जो पिंक कलर की सेट है और गले में नेक वेन डला हुआ है पीछे एए एक लड़की और एक साइड में दिख रही है और पी --

मान्या लिखा हुआ है जिसमें रंगीन लाइट है और दोनों साइड बड़े बड़े काले बक्से रखे हुए हैं और बहुत सारे गुब्बारे --

और साउंड में सीढ़ियाँ है जिस पर एक काली कालीन डली है जिसमें भी रंगबिरंगे --

पुल बने हुए हैं और दीवार पीले कलर की है ऊपर कुछ लाइट दिख रही हैं साइड --

सामने एक लड़का बैठा हुआ है जो काली कुर्सी पर बैठा है और इसके पीछे कुछ आदमी --

ईंईंईं और एक लड़की एक लड़का हु बैठा हुआ है और इसकी बगल में एक और लड़का बैठा है जो काली कुर्सी पर और काला कपड़ा डाले --

बेसिंग बनी है जो काले कलर की है जिसके ऊपर दो--

तीन पिलर दिख रहे हैं एक आदमी नीचे खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक --

दास्तान हास्ताना पहने हुए है ऊपर टोपी लगाए है पीछे कुछ बिल्डिंगें दिख रही हैं और बहुत से पेड़े --

एै दोनों साइड दीवाल है जो कथाई और पिंक है एक --

उस साइड एक खंबा और एक बिल्डिंग दिख रही है जो सफेद और हरी दिखाई दे रही है।

नीचे एक बड़ा पेड़ दिख रहा है जो आधा हरा आधा ब्लैक एंड वाइट है ऊपर आसमान सफेद और ग्रीन --

सामने सोफे रखे हुए हैं जो सफेद कलर के है और जिसमें कथाई डिजाइन बनी हुई है बीच में एक काँच वाली टेबल है नीचे चॉकलेटी --

अअअ फुदी बल्ला कुछ एक डंका छतली और एक पानी का बोटल --

उम लगे हुए हैं और ऊपर पन्नियों में रस्सी नीचे बंधी हुई है।

ए छोटी उं उं दीवाल बनी है जो लकड़ी की सफेद कलर की है जिसकी बगल में छोटे छोटे गमले हैं बीच में एक लाल कलर की चट्टा --